देखिए यह एक सलून है जहां की एक लेडीज का बाल काटा जा रहा है जो की एक लड़का काट रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से बाल कटाई होता है | यहाँ देखिये सामने में एक सीसा है।

और ये बहुत ही आ मस्त चाय बनाते हैं और यहां और बहुत सारे आदमी जाकर चाय पीते हैं। और भारत की चाय पीने में भारतीय सबसे आगे होते हैं।